यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक घर बन रहा है और यहाँ पे लेबर लोग काम कर रहे हैं।

जंगले है और यहां पे घर बने हुए हैं जोकि लकड़ी के बने हुए दिखाई रहे हैं।

जो की एक घर के सामने पाइप में पानी --

पटाखे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे दिख रहे हैं ।

यहां पे हमें बहुत सारे लाइट्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और बैठने के लिए ब्रेंच रखे हुए हैं।

पिंजरा में छेद किया गया दिखाई दे रहा है और वहां पर हमें घर दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे हमे एक मंदिर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे घर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ --

यहाँ पे हमे एक गाय दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमे बहुत सारे --

और यहाँ पे घंटी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और घर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे --

गुलाबी कलर और पीले कलर में पेंट किया हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे हमें बहुत सारे घर दिखाई दे रहें हैं और तार लगे हुई दिखाई दे रही है।